और लाल कलर की बोतला पड़ी है।

एक आदमी बठीने खड़यो है दुसरो आदमी चाल र जा रहियो है एक दुकानदार भी बठे खड़यो है।

चिलकना चिलकना कलर का पड़या है ऐ बैठ बा जयांक्ला।